आई हैपे रास्ते के ऊपर एक सादा गाड़ी रखी हुई है और दो बाइक रखा हुआ है। और रास्ते में दो आदमी चल रहै हैं जिन्होंने सदा रंग का शर्ट पहना है और ब्लैक कलर की पेंट ।

यह कोई बस स्टैड लग रही है जहाँ पे दूर दूर में बहुत सारे बस दिखाई दे रहे है। बहुत सारे आदमी यहाँ पे दिखाई दे रहे है एक आदमी यहाँ पे ब्लू कलर का शर्ट पहना है।

यहां पे एक आदमी खड़ा है जो यहां पे व्हाइट कलर का शर्ट पहना है और ग्रे कलर की पैंट पहनी है। यह बस का रंग --

वाइकस स्कूटी रखि हुई है। और बहुत सारे आदमी यहां पे खड़े हैं। ऊपर में यह बिल्डिंग बहुत ऊंची दिखाई दे रही है और सामने में एक पेड़ है। जिस पे पत्ते ह--

मेडिकल शॉप दिखाई दे रही है जहां पर बहुत सारे यहां पर मेडिसिन दिखाई दे रहे हैं एक आदमी है आप पर बैठा हुआ है। यहां पर दो चेयर --

यह एक चर्च है चर्च के पीछे में यहां पे जीसस दिख रहे हैं एक रेट के कलर का यहां पर चेयर दिख रहा है।